और एक बिल्डिंग है छोटी-सी दिख रही है। उसके दो --

व्हाइट रंग का कलर दिया हुआ है। बिल्डिंग के सामने बोहोत बड़ा एंगल है।

वायलेट कलर का बैंगनी कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने एक सड़क दिखाई दे रहा है। सड़क के सामने एक लेडिज़ खाने का दुकान लगाया हुआ है।